यह चित्र एक घर का है।

क्रिस्टल ऑटो ग्लास ए_आई_एस एक्सक्लूसिव ग्लास शॉपी है।

यहां एक सुंदर सा चित्र है।

यहां बहोत सुंदर सुंदर टैटू बनाए जाते हैं।

यह एक होटल का चित्र है।

यहां शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलता है।

यहां बहुत सारे लोग मच्छी बेच रहे हैं।

यह एक दुकान का सेंटर है।

यह मशीन पुरानी लग रही है।